दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये एक बिल्डिंग भी दिखाई पड़ रही है।

आदमी महिलाएं सब कोई खड़ा हैं और यहाँ पर ये लोग बहोत ही ज्यादा --

जो के सारथी का रिक्शा है और यहां पर ये औरत ने लाल कलर की साड़ी पहन रखी है।

इस फोटू में एक छत के ऊपर लिंटर डाला जा रहा है और इस फोटू में बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं।